एक घर बना है। घर के बाहर बाइक खड़ी है। एक आदमी भी खड़ा है टोपी लगाए हुए।

ओ एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है।

ये एक नजारा दिख रहा है जिसमें सिर्फ बच्चे खेल रहे हैं कुछ पौधे भी हैं और बैठने के लिए भी जगह है खेलने के भी है लेडिजे भी कुछ बच्चे-बच्चियां हैं।

एक भैंस है जिसके चार पैर है और भैंस तगड़ी है और उसका एक बछड़ा है।

एक खंडहर है मने एक खंडहर है जिसमें ऊपर छत नहीं पड़ी है। एक के ऊपर कुछ छत दिख रही है जो खंभे हैं।

निचे पानी की तरह बहता हुवा प्रतीत हो रहा हला की ये पानी नही हैं।

और उसके पीछे एक स्टेनलेस स्टील की चारो तरफ --